और उसमे एक दो आदमी भी नजर आ रहे हैं। इसके आगे हरी-हरी घास और छोटे-छोटे पोधे भी हैं। ।

यहाँ पीछे कई कच्चे मकान और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। सामने लम्बी लम्बी छड़ो के खम्भे बनाये गए है।

इसमें जगह-जगह बिजली के खम्बे लगाये गए हैं और इसमें बड़ी बल्ब लगाये गए हैं। यहाँ गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा हाल के जैसा कमरा दिखाई दे रहा है। इसमें उपर के हिस्से में चौकोर कई सारे बल्ब लगाये गए है।

पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है। इसमें फूल भी है। सामने एक बड़ा सा वृक्ष की डाली लटक रही है।

इसके अंदर एक वृक्ष है और एक टावर भी लगा हुआ है। एक बिजली का खम्बा है और मैदान नजर आ रहा है।